यह हमें मैदान दिख रहा है और मैदान में हमें बसे खड़ी हुई दिख रही है एक लाल रंग की बस खड़ी है और एक नीले रंग की बस है एक सफ़ेद बस है जिस पर नीला डिज़ाइन बना हुआ है ।

यहाँ पर हमे लाल रंग का एक धार्मिक स्थल दिख रहा है बिल्डिंग बनी हुई है उसके पास अब एक क्रॉस बना हुआ दिख रहा है| ये लाल रंग की बिल्डिंग है इसमें ऊपर खिड़कियां बनी है कांच लगे हैं।

लिखा हुआ है नोटिस लगे हुए हैं लगे हुए है और सामने कुछ दीवार दिख रही है जो लाल रंग की हैआसमान दिख रहा है आसमान पर रोशनी दिख रही है हमे।

नीचे व्हाइट कलर का अ बेस है एक सफ़ेद दीवार दिख रही है पीछे ऊपर नीले रंग का डिज़ाइन है और सामने कांच में तीन अलग-अलग स्टेचू दिख रहे हैं।

यहाँ पर हमें एक कच्चा रोड बना हुआ दिख रहा है जो मिट्टी का बना है और साइड पे यहाँ पे कुछ छोटे-छोटे पौधे लग रहे हैं और यहाँ पर एक सफेद रंग की दीवार बनी हुई है जिसमें सफ़ेद पिलर्स बने हुए हैं।

पीछे भी एक चित्र बना हुआ है यहाँ पर लाइट्स लगी हुई है पर्दा लगा है पीछे और ऊपर फूल बने हुए हैं बिजली वाले जो लाइटो से जलते हैं।